यह एक बाँध है।

पूरी तरह बनकर तईयार नहीं हुआ है।

यहाँ पर लोग डांस करते हैं जिससे उनको आनंद मिलता है।